यह एक बहुत अच्छा बेड है।

और कूलर भी लगा रखा है।

यह एक बहुत बड़ा रोड है।

और मंदिर में भगवान की मुर्तियां भी रखी हुई है।